जो वाल का है ओ पर्पल कलर का है।

जिनके पास आदमी दिखाई दे रहे हैं।

के नेक पीस है जिसके साथ सॉस दिया गया है जो ये जो व्हाइट कलर जो ओ टेबल है जो व्हाइट कलर का है।

और जो आदमी दिखाई दे रहा है वो व्हाइट कलर का कपड़ा पेहना हुआ--

और चार ठो मैन है इसका साथ एक बच्चा--

पिक्चर है यह एक दुकान का है।

सामने एक फ़िल्टर भी दिखाई दे रहे है उसका है वो कॉटन है।

भुजिया सब कुछ है कैंडल्स है इसके बाद आटा सब कुछ दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा से अरेंज किया गया है।

और ये जो पिक्चर है वो एक रूप का है।

जो ये पिक्चर है ये एक--

उसका ये रु रूम का कलर जो है वह है पिंक है उसका दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

उसका ये जो है अम इसका जो है दरवाजा इंट्रेंस है वो जो इस लोहा का एक ठो ब्लैक कलर का बड़ा सा है।

ये पिक्चर में एक थोड़ा टावर टाइप का है जो उसमें लाइट को चमकाने को ऊपर तक है।

यहां में तीन गाड़ी दिखाई दे रही--

ऊपर में टीना दिखाई दे रही--

तीन ठो गंदा दिखाई दे रहा है।

है कि इस घर में बहुत ज्यादा खाना सब सब्जी सब निकाल के रखा।

ये पानी बोतल जो दिखाई दे रहे उसका और ये जो वाल्स का कलर है वो ग्रीन कलर --

और ऊपर में एक फैन भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

जो पिक्चर है गार्डेन टाइप का है।

और इस देख के लग रहा है कि ये दिन का फोटो है।

इसका अंदर में जा कर येलो कलर का दिखाई दे रहे है उसका--

जो वाइट कलर में पेंट है।

नमस्कार सब जगह लाइटे लाइटे --

इसके बाद इसके पीछे में पैरट लोग के पीछे में बहुत सारा आर्म्स खिलौना टाइप दिखाई दे रहा है।

और राइट में एक मिन्स फ्लावर टाइप का एक थोड़ा सा कच्ची टाइप का है प्लांट है।

उसका उसका पीछे बहुत सारा गच्ची सब दिखाई दे रहे है।

उसका रास्ता में भी दिखाई दे रहे है उसका कि जो मौसम है वो दिन तरफ का उसका आसमान जो पूरा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

का वास का कलर है ब्राउन टाइप --